एक व्हाइट ड्रेस पहने है एक ब्लैक एक ऑरेंज और एक--

जिसमे एक डॉक्टर आयस्मा नाम की इसमें रहती है पॉपुलर होउस हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा सा गेट दिख रहा है एक शेटर वाला भी दुकान है इसमें इसमें खाली है।